देखने में आकर्षित अट्रेक्टिव सुंदर लग रहा है।

और एक आदमी नजर आ रहा है।

क्योंकि कुछ यात कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि --

रिक्शा दिख रहा है। और इस इमेज में काफी अँधेरा है जो किसी से समझ नही आ रहा है।

जो कि तीनो का आकार साइज --

जो की एक बोर्ड बना हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है जोर्डेन --

और एक टेबल फेन नजर --

कुछ कार जो है पार्किंग में लगी हुई है और कुछ कारस --

कुछ औरतें घूघंट नहीं करी हुई है ।